ये एक बुक की दुकान है बुक का नाम लिखा है शृंगलाज बुक डिपो इस पो डिस-- स्टेशनरी जहाँ पर फोटोकॉपी भी होती है सामने की तरफ बहुत सारी बुक्स राखी हुई हैं।

यहां पर पीछे की तरफ लाइन से बेंच लगी हुई है जिसमें से कॉर्नर पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक केची है और उस पर एक बेंच पर एक गमला रखा हुआ है जो ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का है।

यहाँ पर एक गुफा जैसी दिखाई दे रही है जिसमें व्यक्ति अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है जो गुफा है कुछ तेढी-मेढ़ी नुकीली चीजों जैसी दिखाई दे रही है जो व्यक्ति --

नट पर एक पुतला भी रखा हुआ है उसी के पास में एक साइकिल भी है इस बिल्डिंग के बाहर एक बूढ़ी औरत है और सामने के तरफ एक लड़का आते हुए नजर आ --

यहाँ पर सामने की तरफ एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें जाली वाली खिड़किया है इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ तीन फोरविलर खड़ी है और इस यहाँ पर सामने की तरफ एक गेट है जहां पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है।

खड़ा होकर अपना फोन चला रहा है यहाँ पर जो केले ठगे हुए है पास में कुछ टमाटर प्याज सारी चीज भी रखी हुई है।

टाइप कर रहे है सामने की तरफ एक खिड़की भी है उस खिड़की के पास में ही एक बक्से में कुछ सामान रखा हुआ है इनके पीछे की तरफ एक टेबल है जिस पर एक पानी की बोतल रखी हुई है।

यह सामने की तरफ एक वॉच भी दिख रही है साइड में अ एक सामने से दरवाजा भी नजर आ रहा है।

जिसके पीछे की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन कलर का और ऊपर कूलर लगा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर कोका कोला की एड का पो --